क्रिस्चन लोगों का शमशान घाट है बहुत सारे पेड़-पोधे हैं।

एक मॉल है सेवेंथ हेवन ए स्लाइस ऑफ हैप्पीनेस फास्ट फूड कैफे बेकरी केक्स ।

ये कॉफी शॉप है । रिपब्लिक डे वाले गुब्बारे हैं ।

बाहर साइकल है कार्यालय संयुक्त कृषि निर्देशकयुक्त प्रमंडल मुजफ्फरपुर ।